यह ईमेज में हमें एक बस स्पॉट दिखाया जा रहा है जहाॅं पे बोहोत सी बसें खड़ी हुई हैं।

यह इमेज मे एक आई केयर सेन्टर की दिखाई दे रही है जो कि एक बोहोत बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर हमें एक सफ़ेद कलर का बैनर दिख रहा है जिसके ऊपर दिख रहा है|

तथा वहाँ पे हमें वहाँ पे एक बैनर दिख रहा हैं जोकि नीले कलर का है तथा वहां पे हमें काले कलर के शब्दों में कुछ शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं। वहा पे बाहर दो आदमी खड़े हुए दिख रहे हैं।

बिल्डिंग का कलर हमें सफेद दिख रहा है। तथा उसके साइड में हमें कुछ जालियां दिख रही है जोकि नीले कलर की बनी हुई है और --

जो कि दो बगुलों की है। वह दो बगुले यह दरसा रहें हैं। कि वह एक --

यहाँ पे हमें बहोत सी ईटे लगी हुई दिख रही हैं । ईटो का रंग हमें ब्राउन दिख रहा है वहाँ पे सीमेंट भी लगी --

बहुत रंग बिरंगे हैं। वो पंछी में लाल नीला हरा और काला भी दिख रहा है।

ये इमेज में हमें बहोत सी स्लाइडे दिख रही हैं तथा ये बच्चों का बगीचा दिख रहा है जो की --